ये केनरा बैंक का ए.टी.एम. खुला हुआ है।

मौसम घिरा हुआ नजर आ रह है और समाने एक पेंप बिछा हुआ है।

और दीवाल का भी रंगाई किया गया है और लाल कलर का भी दीवाल लगा हुआ है। एक गेट नजर आ रहा है।

किलनिक खुला हुआ है आदमी नजर नहीं आ रहे हैं किलनिक का।

और उसके पीछे भी मकान दिख रहा है और पेड़ भी थोड़ा-सा नजर आ रहा है उसका पत्ता नजर आ रहा है।